उसके बाहर नीले और सफेद फुग्गे लगे हुए है और एक दो तीन चार पाँच छह आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने दो मोटर साइकिले रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी साइकिल से जा रहा है दो तीन आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है हेलमेट लगाया हुआ है पोस्टर दिखाई दे रहा है।